यह एक मंदिर का चित्र है मंदिर का रंग सफेद है मंदिर के ऊपर एक शंख लगा हुआ है।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

एक आदमी खड़ा है जो ब्लू रंग की टी शर्ट और ब्लू जींस पहने हुए हैं।

यह एक बहोत ऊंचा बिल्डिंग का चित्र है।

एक बिजली का खंभा और तार दिखाई दे रहा है यहां पर एक स्कॉर्पियो और एक बाइक है।

यह एक रोड का चित्र है यहां पर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है।

यहां बहुत गहरा पानी दिखाई दे रहा है कुछ आदमी के हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं।

एक बाइक खड़ा है यहा पर बहोत सारे बच्चे खड़े हैं।

बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। यहां पर छोटे छोटे ईंटे लगे हुए हैं।

बहुत सारे खिलौने हैं यहां टिकली के डब्बे रखे हुए हैं।

यह एक सैलून का चित्र है यहां पर बहुत सारी कुर्सियायें लगी हुई हैं।

बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं यहां पर एक बेंच रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे बैलूने लगे हुए हैं यहां पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

सामने कुछ गमले उसमें पेड़ लगे हुए हैं पीछे एक अल्बेस्टर का घर दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम का चित्र है यहां पर दो बेड लगे हुए हैं।

बेड के ऊपर कंबल और दो तकिया रखा हुआ है। यहां पर एक पर्दा लगा हुआ है।

बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहां बहोत ऊंची ऊंची बिल्डिंगे बनी हुई हैं।

बहोत सारे वाशिंग मशीन और ए_सी बिक रहा है।

बहोत सारे हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मार्केट का चित्र है यहां पर एक टेंपू में मशीन लोड किए हुए हैं।

बेड में कंबल और तकिया रखा हुआ है यहां पर दो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक शादी मंडप का चित्र है यहां पर बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक बहुत ऊंचा मंदिर बना हुआ है मंदिर के ऊपर झंडा लगे हुए हैं।

यह एक झरने का चित्र है यहां बहोत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

कुर्सी रखे हुए हैं यहां एक टेबल रखा हुआ है।